यह एक सेलून का दूकान है और सेलून के दूकान में एक कस्टमर बैठा हुआ है.

और नल में रेड कलर का हैंडील लगा हुआ है.

जिम करने के लिए मशीन लगाए हुए हैं.

बजरंगबली है माँ दुर्गा है वो लोक का पट नहीं खुला है.

आ येलो टाइप का दिख रहे हैं।

और यहां पे ब्लैक कलर का जिम करने के लिए मशीन वगैरा लगे हुए हैं.

और व्हाइट

ओ बाहर में एक शीशा का गेट लगा हुआ है एक खुला है.

सामने से शहीद स्मारक है और--

निचे जो रोड है पतलासा ईटा सोलिंग.

जोकि बहुत ही सुन्दर है और ऊपर मे सीलिंग जो दिख रहा है राउंड किया हुआ वो भी बहोत ही सुन्दर है और लाइट्स लगे हुई हैं।